हाथी का दांत सफेद दिखाई दे रहा है और उधर पे एक सफेद घोड़ा सा बना हुआ भी नजर आ रहा है और यज्ञ की बनी हुई भी नजर आ रही है ईंटों से--

पर एक मंदिर दिखाई दे रहा है ऊपर ऐसा लग रहा है ऊपर पोर्शन दिखाई दे रहा है मंदिर का मंदिर का थोडासा लाल कलर दिखाई दे रहा है और साइड में कुछ घर भी दिखाई दे रहे है मंदिर के पीछे अनेक बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है जो की--

अभी तो मतलब मंदिर का बाहर का ही इतना लम्बा है तो मंदिर कितना अन्दर और सुन्दर होगा आसमान नीले कलर का दिखाई दे रहा है मंदिर के पीछे एक छोटी सी लड़की थोड़ी सी दिखाई दे रही है और पीछे हरा हरे से पेड़--

घर दिखाई दे रहा है जो की काफी सुंदर सा लग रहा आधा-आधा पोरशन दिखाई दे रहा है घर का और यहां पर सीढ़ियां दिखाई दे रही है।

--और यहा पे नीचे सफ़ेद कलर के टाइल्स है और स्टील की साइड में रेलिंग दिखाई दे रही है विंडो दिखाई दे रहा है परदे--

एक स्टेच्यु दिखाई दे रहा है और उस स्टेच्यु के पीछे एक ग्राउंड सा दिखाई दे रहा है खुला और स्टील की रेलिंग दिखाई दे रही है और स्टेच्यु के पीछे एक झोपड़ी भी दिखाई दे--

ओर ठंडी की बोतल दिखाई दे रही यहाँ पे काफी बड़ा मार्ड है यहाँ आपको कई समान दिखाई ने को मिल रहा है यहाँ कुछ व्यक्ति भी दिख रहे है जिन्होंने मुंह पर माक्स लगा--

पौधे भी लगे हुए है गमलों मे और मंदिर के बाहर भी ग्राउन्ड सा है जिसमे हरे -हरा सा दीखाई दे रहे है पेड़-पौधे और बंदिर के पीछे कई अधिक बड़े-बड़े पेड़ है।

और एक छोटा सा बच्चा भी दिखाई दे रहा है गाय का जो काफी अच्छा लग रहा हुआ है उनके पास मे एक बाल्टी है और एक बड़ा सा पेड़ भी है और जहा पर नीसेनि भी रखी हुई है दिखाई दे रही--